लाल कलर की छत दिख रही है।

एक बाइक खड़ा है यहां पर बहोत ही सुंदर शॉप है।

और ये रिसेप्सन ब्वाय उनकी हेल्प कर रहा है वहां पर लाइटिंग सिस्टम --

रोड बहुत ही नीट एंड क्लीन है।

एक बहोत ही सुंदर रूम है नीट अँड क्लीन --

दरवाजे पीछे दो है कलर ब्लैक है ए_सी है।

घर है डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है।

दूसरी मंजिल में बहोत सारे लड़के है गुब्बारों की डेकोरेशन की है लाइटिंग सिस्टम बहोत है चांद बहोत अच्छा लग रहा है।

यहां हम देख सकते हैं बहोत ही अच्छे टेबल है।

अ ईंटों से बनी हुई है डिजाइन बहोत ही अच्छा है लाइटिंग भी दिख रही है।

यहां पर हमें बहोत सारी चेयर्स दिख रही है।

भगत सिंह की और भी पिक्चर्स है काफी।

एक पहाड़ी घर है पत्थरों वाला।

कूड़े के दो डस्टबिन हैं ग्रीन कलर का घर है।